इसके सामने से पहाड़ दिखाई दे रहे है और जहाँ पे पेड़ भी बहुत सारे दिखाई दे रहे है जो ग्रीन कलर में है और सामने से बदल भी दिखाई दे --

और यहा पे सामने एक व्यक्ति मोटर साइकल पे जा रहा है और यहा पे पेड़ ही दिखाय दे रहे है जो हरे कलर --

और यहां पे कलस रखे हुए हैं नरियल रखे हुए है और यहां पे फुल भी रखे हुए हैं बेल पत्र कुछ पत्ते--